तरक्की के लिए अपना अनुभव दे रहे है और कुछ क्रेने यहां पर --

पेड़ को हर प्रकार के लगाए गए हैं जिसमें हर तरह की--

यह एक शादी वाला घर है जिसमें--

येह एक टेलर की शॉप है जिसमें--

डी_जे है डीजे में हर तरह के--

शॉप हैं जहां पर हर तरह की--

घर के बाहर एक बहुत ही प्यारी बगीची है जिसमें कुछ अलग अलग तरह के फूल लगे हुए हैं।

यह एक पैलेस है जिसमें शादियां की जाती हैं कुछ लोग--

हर प्रकार की रोशनी का भी पूरा प्रबंध है।

यह एक बजार है बजार में कुछ--

कार्य किया जाता हैं यहां पर एक ट्रैक्टर भी खड़ा है और साथ में नर्सरी का भी कार्य चल रहा--

इ डेकोरेशन भी गई है और लाइटो की भी--

बाइक सवार हैं और कुछ गाड़ियां खड़ी हैं।

चीजें प्राप्त होती हैं जैसे कि फल फ्रूट सब्जियां--

और कुछ पुलिस कर्मचारी अपना कार्य कर रहे हैं।

औरतों ने अलग अलग तरह की साड़ियां पेहनी हुईं हैं और सुंदरसी लग रही है।

और पीछे कुछ मूर्तियां लगी हुई है और बहोत ही सुन्दर सी --

यह एक बुद्ध धर्म की मूर्ति है और सामने एक लड़का--